ये तो एक सिल्वर का शॉप है यहां तो तरह-तरह की दीपक दिखा रही है तीन है इसमें ये तो बढ़ बढ़िया वाला एक दूसरी---

पीला रंग कलर का है और वहां कुछ बोर्ड भी लगा---

वार पे तरह तरह की से सीलिंग का भी अच्छा कलर है।

यहां दो एलीफेंट का वो हाथी का स्टैचू भी दिखा रही है ये मंदिर तो ज्यादा पुराना है।

ये तो एक योगा क्लास हैं यहां तो योगा टीचर अ लड़कियों से योगा करवातीं हैं वो तो आसान कर रही है सूर्य नमस्कार जैसी कर रही है वो--

यहां तो ज्यादा लोग हैं ज्यादा लोग हैं सब सब सब औरतें दिखा रही है और सब पैंट प --